वही बीच मे हमे इस मॉल का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसि ही और हमे बहुत सारे शॉपिंग देखने को मिल रहे है ।

गेट के बाहर हमे एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है वहा हम ध्यान से देखे तो हमे एक मूर्ति भी देखने को मिल रही है।

एक नदी के किनारे की तस्वीर है जहाँ हमे कुछ पेड़ देखने को मिल रहे है पेड़ की साथ साथ हम यहाँ कुछ पोटस भी देख प रहे है यहाँ बहुत सारी बाइके पार्क की गई है ।

ये तस्वीर एक पार्किंग साइड का लग रहा है जहा हमे बहुत सारी गड़िया पार्क की गई दिखाई दे रही है ।

मे हमे एक मंदीर देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर हमे गणेश भगवान की मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ हम देख पा रहे है एक के हाथ मे बैट है वही हम देख पा रहे है के दूर की और कुछ पेड पौधे भी नजर आ रहा है।

के यह तस्वीर एक ग्राउंड की तस्वीर हैं जिसमे हमे एक बड़ा सा पोस्टर देखने को मिल रहा हैं वहा कुछ लोग भी खड़े हैं।

बाहर की और हमे कुछ ऑटो और कुछ बाइक पार्क की हुई नजर आ रही है। आसपास हमे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

दी गई इस तस्वीर मे हम एक ग्राउंड देख प रहे है जिस ग्राउंड मे हमे बहुत से लोग दिखाई दे रहे है यह सारे क्रिकेट खेलते हुए हमे नजर आ रहे है दूर हमे कुछ पेड़ पौधे भी देखने को मिल रहे है ।

इसे रंग बेरंगी रंगो से रंगा गया है वही हम दूर एक सफ़ेद रंग की मंदिर अंदर मे देख पा रहे है।

जिनमे कुछ आदमी है कुछ औरत हैकुछ भुदढ़ाई बजुर्ग भी है।

यह द्रुश्य एक रास्ते का हैं जिसे देख हमे एसा लग रहा हैं मानो जेसे यहा किसी चीज की रेली निकली हुई हो।

यह हम देख पा रहे है की यहा कुछ लोग बस मे तेल डालते हुए दिखाई दे रहे है इसमें हमे ड्राइवर भी नजर आ रहा है।

दीवार पर कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए है वही हम उसके दूसरे साइड कुछ पेट्रोल पंप देख प रहे है पेट्रोल पंप देखने मे काफी बड़ा है।